और कुछ गोबर पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

है और कुछ ऑटो रिक्शा भी खड़े हुए--

और यहां पर डूबता हुआ सूरज भी दिखाई दे रहा है।

बिजली वाला एरिया हो और यहां पर हमें कुछ--

इस फोटो में हमें एक--

और सामने हमें एक टाइम टी --

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

लगी हुई नज़र आ रही है और एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है।

तीन टर्टल पानी से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं।

पीले और संतरी रंग के फूल हैं।